एक बैठने वाली कुर्सी लगी हुई है जो की काले कलर की है।

गेट खुला हुआ है इसलिए उसमे से पानी निचे निकल रही हुई है ऊपर पहाड़ है जिसमे हरे भरे पड़े पोधे लगे हुए हैं जो की काफी बड़े बड़े और छोटे छोटे पेड़ पोधे हैं ।

ये एक पानी का बना हुआ बांध है जिसमें नीले कलर का और सफेद रंग का पेंट हुआ है।

एक मंदिर है जिसमे भोत सारे भगबान लगी हुई है सामने एक दुर्गा जी की मूर्ति है उनके बगल में दो और मुर्तियाँ हैं।